रेड कलर की पर्दा लगे हुए हैं और यहां पर ऊपर सोफा डाला हुआ है बैठने के लिए और यहां पर हरी-भरी अलग-अलग तरह की लाइटिंग है।

यहाँ पे टेबल पे इंजेक्शन और कॉटन रखा हुआ है। यहाँ पे दो डॉक्टर हैं। जिन्होंने एक ने एक ने मास्क लगाया हुआ है और उनके गले में आला है।

एंटिना भी लगा हुआ है ब्लैक कलर का पीछे की ओर एक गेट है लोहे का और यहाँ पे इमारत भी है।

यहाँ पर एक दुकान है। जिसमे कि बहुत सारी सेल्फस बने हुए हैं। एक काउन्टर है जो की काँच का है।

यहां पर एक रनवे है जहाँ पे एक एरोप्लेन दौड़ रहा है | एरोप्लेन में पंखे लगे हुए हैं और वहाँ पे टायर भी लगे हुए हैं | एरोप्लेन में कांच लगे हुए हैं और यहाँ पे एरोप्लेन वाइट कलर का है।

यहाँ पर एक निर्माण का कार्य चल रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर बहोत सारी लोहै की सारिया डले हुए हैं और यहाँ पे बाहर की ओर --

यहाँ पे एक टेबल है। टेबल पे ग्रीन कलर की चादर बिछी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

यहाँ पे सुबह का वक्त है। ऊपर आसमान है सभी लोगों ने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। कुछ लोग झूले में हैं। कुछ लोग बाहर की ओर हैं।